यहाँ रेलवे स्टेशन रहेगा जहाँ पर दो साइड प्लेटफार्म बने हुए हैनीचे फैक्ट्री बनी हुई रहेगी और यहाँ शॉप भी बनी रहेगी यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए होंगे।